यहाँ मिस्त्री एवं लेबर भी होंगे। यहाँ बालू रखे हुए हैं गिट्टी है। यहाँ गमले में काफी सारे फूल लगे --

यहाँ से लोग फूल तोड़कर ले जाते है यहाँ फूल से शादी मे काम लिए जाते है।

क्योंकि यह ग्राहक देखेंगे तो यह खरीदने के लिए आएंगे। यह दुकान के बाहर बहुत सारे बाइक लगे --

और एक तलाब है। यह तलाब बहुत बड़ी है। यह तलाब मे बोहोत सारी बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं बहुत सारे रिक्क्षे भी हैं बहुत ही भीड़ लगी हैं।

एक लड़का है। यह लड़का टोपी पहने हुए है। यह लड़के के हाथ में जूते हैं।